की यहाँ द ए.आई.एम. बैंक कोचिंग है इस कोचिंग में बहुत अच्छे पढ़ाई करते है सब बच्चे हमारे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं।

बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इस कोचिंग में हम सब चाहते है कि और भी ज्यादा अच्छा पढ़ाई चले इस कोचिंग --

यहाँ एक लड़की डांस कर रही है ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है देख --

ये यहां क्या बना हुआ है घर बना हुआ है और इतना लंबा बहुत लंबा है घर है या क्या है इसमें पता नहीं अंदर से भी बहुत लम्बा है।

उसका हाथ देखिए इन इनको एक आदमी पूजा कर रहे हैं कितना सारा सामान लेकर आए हैं जल और फूल लेके आए हैं और प्रसाद लेके आए हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए ।